यह एक पर्यटक स्थल है।

बहुत सारे बच्चे लोग घूमने के लिए आए हैं और यहां पे हम देख सकते हैं कि एक साइकिल है।

बहोत सारी कुर्सी और बहोत सारे प्लेट --

आदि बहुत सारे समान दिखाई दे रहे--

और यहां पे बहोत सारे छोटे छोटे लाइट है और यहां पर--

यहां पे लाल फूल है पीला फूल है काला फूल है और पीला फूल है।

यहां पे छोटे छोटे लाइट दिख रहे हैं और यहां पे एक समान भरने का बैग दिख रहा--

और यहाँ पे स्कूटी है और यहाँ पे बहोत सारे बाइक दिख रहे है और यहाँ पे लाइट दिख रहा --

यहां पर हरा हरा पौधा हैं।

और यहां पे ग्रीन कलर का गमला है येलो कलर का गमला है रेड कलर का गमला है।